कुछ लोग दो बाइक से हैं और आपस में कुछ बाते कर रहे हैं अगल-बगल पेड़-पौधे नजर आ रहें --

राहगीर होटल एवं फैमिली रेस्टोरेंट है जहां पे खाने एवं ठहरने का उत्तम व्यवस्था है।

अंदर में एक दुकान नजर आ रहा है दुकान में ही--

कुर्सी रखी गई है अंदर कुछ गाड़ियां है बाएं ओर में शिवम साइबर प्वाइंट --